जिस पर जय हिंद मार्केट उर्दू चित्तुर लिखा हुआ है जिसके बाहर कुछ बाइक भी खड़ी हुई है यहाँ पे बड़ा-बड़ा अलताब भी लिखा है